गेस्ट हाउस के बाहर काफी बड़े ग्राउंड भी है।

है इस बिल्डिंग में काफी बांस से मचान बनाये हुए हैं ये --

कोट है यह कोट सरद समां --

ये बहुत सारी ऑनलाइन के --

यह दुकान में आईडिया का सिम भी बिकता --

यहाँ सभी एकजुट होकर मोमबत्ती जला कर प्रार्थना कर रहे हैं ।

इस बिल्डिंग को देखने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आए हुए है। इस बिल्डिंग के आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है।